कार दिखाई दे रही है। बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे। बोहोत सारे साउंड स्पीकर दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। टॉवर्स दिखाई दे रहे हैं। खंबें दिखाई दे रहे हैं और रोड पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है और बोहोत कुछ दिखाई --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

दीवार का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाॅं पर कुछ का कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहाॅं पर कुछ दिखाई दे रहा है नीचे स्क्रीन दिखा --

बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं कुछ ग्रीन कलर दे रहा है कुछ पिंक कलर दिखाई दे रहा है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

जे.सी.बी. दिखाई दे रही है कुछ मशीन्स दिखाई दे रही है कुछ केबले दिखाई दे रही है खम्बे दिखाई दे रही है यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा --

यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग् पे येलो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक टावर दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें एक--

एक दिवार पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ खम्बे दिखाई दे रहे हैं एक बैनर पे पिंक और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है एक पे ग्रीन और ब्लू कलर दिखाई दे रहा हैं।